अम्म यहाँ गमला लगा हुआ है मतलब दस्ताना गम गमला का और और नीचे में मरियम माता भी है मूर्ति लगा है लाल कलर में हैं ।

बर-बियाह या शादी के मौसम में यहाँ पार्लर जाते हैं ।

खाली कर रहा है यहाँ कुछ घर वर बनने वाला है और एक खाता लगा है ओ कुछ खाता को लेके कुछ कंपनी हो सकता हैं ।

रेल स्टेशन है यहाँ रेल जा रहा है और और ऊपर तरफ तार-वार लगा हुआ है और यहाँ प्रतीक्षालय भी है यात्रियों के लिए और एक --

पुरुष महिला के लिए बाथरूम भी है और इधर पेड़- पौधे है इधर बैठने के लिए व्यवस्था हैं ।

हल्दी कलर का हो गया है कोई हरा दिख रहा है कोई थोड़ा लाल दिख रहा है और पत्ता बहुत सुन्दर दिख रहा है इसको खाते भी है जैसे लग रहा है भाजी के रूप में --

और पेड़-पौधा दिख रहा है पत्ता हरा- हरा दिख रहा है पानी भोत गहरा हैं ।

और दो -तीन टेबल है तीन- चार टेबल में किसी-किसी में गिलास लगा हुआ है और दिवालो पे कुछ पेंटिंग बना हुआ हैं ।

विश्व रत्न बाबा साहेब अंबेक्टर का जो हमारे देश का संविधान लिखा है जिसे कौन नहीं जानता ?--

यहाँ ये कुछ होटल है या कोई लॉज है इसमें टेबल -वेबल लगा हुआ है और खाना-वाना पीने के लिए और नीचे में पूरा टाइल्स ही टाइल्स का रूम है और ये पक्का का घर है एक -दो बल्ब भी बर रहा हैं ।

बैंक जो है अभी तो बंद है लग रहा है अभी रविवार का दिन है छुट्टी का दिन है और यहा पे एक साइकिल है और एक मोटरसाइकिल है और ए.टी.एम. में एक लड़का घुसा हुआ है जैसे लग रहा हैं ।

सीढ़िया-विढीया भी लगा है बैठने की व्यवस्था भी है और --